ये कि ये एक किताब की दुकान अअ है और किताब की दुकान में--

अअ गार्डन में अम्म्म डंडे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक मंदिर है और मंदिर के ऊपर बहुत सारी लाइटिंगे डली हुई है और मंदिर के अ गेट पर--

और अअ दुकान की अ आ अम्म पिछले हिस्से में अ पेट दिखाई दे रहा--

ईंट भी दिखाई दे रही है और आ दूर आ तक एक मकान भी आ देखने को मिलता है।

यह बहुत अच्छा नरसरी का चित्र दिख रहा है और इस चित्र में बहुत सारे अअअ पेड़ भी दिख रहै हैं और अम्म --

एक अअ छोटा सा अ अ घर है और घर के पीछे बहुत सारी बड़ी बड़ी पेए पेट पेड़ दिखाई दे रहे है।

टेबल रखी हुई है गुलदस्तती भी रखी हुई है और अ ऊपर अअअ फैन भी लगी हुई है--

बड़ी -बड़ी अ पेट भी दिखाई दे रही है और अअअ मंदिर के ऊपर अअ झंडे भी दिखाई दे रहे है।